मैरिज हॉल में टेबल रखी हुई है उस पे व्हाइट कलर --

गुरुद्वार में कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं प्रेयर कर रहे हैं।

और एक ढाबा है रंग दे बसंती ढाबा है।

अ दुकानों पे सामान खरीद रहे हैं एक आदमी रेड कलर की बाइक से--

जो है बाइक रिपेयर करने की शॉप दिख रही है कुछ टूल्स भी रखे हुए हैं एक जो है बाइक खड़ी हुई है बुलेट खड़ी हुई है।

इस इमेज में हमें एक रोड दिख रहा है.

इस इमेज में हमे एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है हॉल का जो फर्श है व्हाइट कलर का है और जो हॉल है वो भी वाइट कलर से पेंट है हॉल में कुछ --

और ऊपर जो वाइट कलर के झूमर वाइट कलर के फैन लगे हुए हैं।

इस इमेज में हमें रोड दिख रहा है रोड पे दो व्हाइट कलर की वेनें खड़ी हुई दिख रही हैं।

इस इमेज में हमें एक पार्क दिख रहा है पार्क में जो है एक आदमी झाड़ू लगाया है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और पार्क में कुछ चेयर्स रखी हुई हैं।

हाउस का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है ये एक जो है रिपेयर शॉप है।

इस इमेज में हमें एक तालाव दिख रहा है तालाव के पास--

छोटी-छोटी सुख सुखी पेड़ अह नदी पानी के पास घासे से दिख रही हैं।

बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं एक रेड कलर का पेड़ लगा हुआ है एक आदमी बाइक से जा रहा है एक आद एक बाइक खड़ी हुई है दो ब्लू कलर के ड्रम रखे हुए हैं।

इस इमेज में हमें एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

इस इमेज में हमें एक जो है बिल्डिंग दिख रही है जो कि व्हाइट और ब्राउन कलर से पेंट है।

इस इमेज में हमें एक जो है।

सैलून दिख रहा है सैलून के बाहर बाड़--

एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट ब्लू कलर के पेंट पहनी है हाथ में ब्लैक कलर की खड़ी पहनी हुई है।

इस इमेज में हमें व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है।